ईं तस्वीर मा जी हम देख सगदों कि यखम हमतें एक बड़ु सी मैदान दिखेण लग्युं।

ईं तस्वीर मा जी हम देख सगदों कि यखम हमतें बड़ु सी मैदान दिखेण लग्युं हरयूं --